एक झन ह खड़ा बेचारा ग्राहक आ रहे है कि नहीं आ रहे इंतजार में है मेरे को लगता है।

अब रेंग भी रहे है तो अच्छा लग रहा है अब थोड़ा-थोड़ा गिर रहा है तो इनलोग को सुनाई यो दे रहा है अभी पानी देख रहे है मछली वगैरा--

सैलून दुकान है यहाँ पे बहुते सारे लेडिस लोग उम्म अम्म लगता है बाल उल कटावा रहे है।

बहुते ज्यादा दुकान है अउ वी.आई.पी. कट करता है अउ एक ही झन अभी आया हुआ है और आते होंगे अउ पहुँच जाएँगे।

ये फूल है एक लड़का उसमें आजा देख रहा है मेरे को लगता है--

यह होली खेलने वाला व्यक्ति है अउ उसके सामने खुला-खुला रूम दिखाई दे रहा है अउ कितना लाल-लाल दिखाई दे रहा है अभी जो हुआ है।

पानी पी रहा है एक लड़का यह रंग-बिरंग दिखाई दे रहा है और कुछ-कुछ पेड़-पौधा है छोटा-छोटा--

बहुते बड़ा मेरे को लगता है पहाड़ उहाड़ है की क्या बहुते रंग बिरंग दिखाई दे रहा है अउ बहुते मेरे को लगता है पानी का प्यासा था क्या--